सामने साइड पे आ रहे है कुछ डस्टबिन रखी हुई है जो नीले रंग की है हरी घास है और अंदर के साइड पे नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है सफ़ेद रंग की आश्मानी --

ऐके आदमी खड़ा हुआ है जो सफ़ेद रंग का है और एक साइन-सफ़ेद रंग की एक छत है।

पे क्रोमा है जो पिले रंग की है एक रेलिंग लगाई गयी है सफ़ेद रंग की ऊपर छत्त है जो सफ़ेद रंग की लाइटे लगाई गयी है सफ़ेद ने निचे टाट बिछी हुई है।

लाल रंग की टाट बिछी हुई है सामने एक खिड़की लगी हुई है जिसपे कांच लगाई गयी है एक बोर्ड लगा हुआ है जो कत्थे रंग का है।

एक जिम में रूम बना हुआ है जो प्लेट लगे गए है जो पांच किलो से स्टार्ट है काले रंग के प्लेट लगी हुई है।

एक छत बनाया जा रहा है जो बहुत सारे लोग काम कर रहे है नीचे की साइड पे लाड बिछाई गयी है जो काले रंग की लाड है एक बगल में आदमी बैठा हुआ है जो नीले रंग का शर्ट पहना हुआ है।

ये तीन ए_टी_एम मशीन रखे गए है सफ़ेद रंग का दीवार है जो काले रंग का टी_वी लगा हुआ है सफ़ेद रंग के टाइल्स बी-की-ऊपर के साइड पे छत्त है सफ़ेद रंग का दो लाइटे लगी हुई है सफ़ेद रंग के नीचे एक साइड पे टाइल्स बिछे हुए है जो भूरे रंग का है।

बीच मे एक ईम ये रोड गया हुआ है जो कत्थे रंग का है।

उसपे एक बड़ा सा ब्रोनदा है जो एक एक ट्रोली बैग रखी गयी है लाल रंग की कांच लगी है-गयी है जो सफ़ेद रंग की कांच है ऊपर दीवार है नीले रंग की।

एक पे एक दुकान है जो काउंटर है एक आदमी खड़ा है जो काले रंग का टीशर्ट पहना हुआ बगल में एक आदमी खड़ा जो कत्थई रंग का टीशर्ट पहना हुआ कुछ औरते खड़ी हुई है।

जो सफ़ेद रंग के काले रंग के कपड़े पहने हुए है दीवाल का रंग सफ़ेद है कुछ एम्-खम्भे गड़े जो सफ़ेद रंग के उसमे चेयर लगाई गयी है।

यहाँ पे एक बड़ा सा गार्डन है जो हरे रंग की घास है बहुत सारे लोग बैठे हुए है कुछ लोग खड़े हुए है हरे रंग के पेड़ पौधे है अगल बगल पेड़ पौधे जो हरे रंग के पेड़ पौधे है सफ़ेद और नीले रंग के आश्माने है।

साइड पे कुर्सी रखी गयी है जो कत्थे रंग की है।

घर बना हुआ है जो सफ़ेद रंग की है बगल में दीवार है भूरे रंग की अगल-बगल पेड़ पौधे है हरी पत्तिया है एक पेड़ लगा हुआ है जो हरे रंग की पत्ति है।